यहाँ दो हाइड्रोलिक जैक लगे हुए है।

यहां पर एक बल्ब में भी है नीचे टाइल्स लगे हुए हैं।

काउंटर पर क्यू_आर कोड भी चिपके हुए हैं।

और यहां एक वेटिंग मशीन भी रखा हुआ है।

पीछे गांव बसे हैं यहां कई हरियाली है।

यहां कई सारे लोग फूलों को खरीद रहे हैं।

एक लड़की के बेंच पर बॉटल रखा हुआ है।

एक शायद मंदिर है यहां रेलिंग भी लगे हुए हैं।

जो कि काम कर रही है।

अंदर एक आदमी सामान खरीद रहा है।

यहां पे गैंडे के नाक से पानी निकल रहा है।

यहां कई सारे लोग हैं।

और दो आदमी गेट के बाहर जा रहे हैं।

यहां कई सारे झूले लगाए गए हैं।

यहां कई सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां पर कई सारे मैकेनिक काम कर रहे हैं।

यहां पे पेट्रोल डीजल भराया जा रहा है।

यह एक विवाह भवन है यहां कई सारे कुर्सियां लगे हैं।

और ए_सी भी है कई सारे लाइट जल रहे हैं।

और यहां खाना खाने के लिए टेबल कुर्सियां हैं।